यह गाड़ी का शोरूम है यहाँ दिनेश होंडा लिखा हुआ है औ नहीं ये दिनेश हौंडा तो नहीं लिखा हुआ है बाकी--

पता नहीं क्या लिखा है और यहाँ महंगा -महंगा दो तीन गाड़ी है इस गाड़ी का तो नाम मैं नहीं जानता हुँ पर ये गाड़ी लगभग-लगभग दो- तीन लाख का होगा।

यह एक ट्रैन ट्रैन गुज़र रहा है इसमें एक लड़की दिख रहा है यहाँ कुछ लिखाया है लेकिन एक खंभा है लोहा का उसके कारण इसमें लिखाया गया है उसको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ।

यहाँ एक झोपड़ी बनाया गया है यह कोई किसान का जो अपना जो बाड़ी जो रहता है उसका खेती करने का जो जगह जो रहता है उस उस उसमें रहने के लिए उस व्यक्ति ने एक छोटा सा--

वहाँ एक टेबल लगा हुआ है य कुछ यहाँ सूचना पटल की बॉक्स बोलते है यहा ऐसे हम लगभग-लगभग ज्यादा देखने को स्कूल या न्यायालय या तहसील में देखने को मिलता है इसमें कुछ जो सूचना का जो रहता है उस पटल को यहाँ--

यहाँ रख दिया जाता है और यहाँ बहुत सेफ्टी रहता है कोई फ़ाड कर नहीं फेंकते।

यह एक पहाड़ है और बहुत ऊंचा पत्थल का पहाड़ है और निछले हिस्से साइड पेड़-पौधा है उसका आकार थोड़ा छोटा-छोटा है मेरे साइड बगल से साइड एक पेड़ है वो बहुत बड़ा विशाल है और--

कोना श्रीवास्ती यह गेट है यह जो फोटो जो लिया गया है वो कोरोना समय का फोटो नहीं ये फोटो बरसात के समय का लिआ गया है क्योंकि जो जंगली हिस्सा है वो थोड़ा गीला-गीला लग रहा है।

दोखो यह एक कसरत करने का रूम है या जगह है एक जो मशीन जो दिख रहा है उसके--

हॉस्टल है शक्ति कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग बलरामपुर का ये छात्रावास है।

यहाँ रातों रात का समय फोटो लिए गया है यहाँ पे मेरे को बोरेलो या स्कार्पिओ दिख रहा है और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है सुनसान है और--

ठंड का मौसम था इसलिए इस मॉल में हमेशा सूटर ही दिख रहा है और ऊपर में जो लेड जो बर रहा है वो बहुत सुन्दर रोशनी दे रहा है और--

यहाँ कपड़ा का दुकान है यहाँ बहुत सारे कपड़े है और यहाँ पंखा-उनखा भी लगा हुआ है और यहाँ--

कुछ-कुछ का तो है और यहाँ लोअर भी है कपड़ा दुकान है यहाँ कपड़ा का तो लेने वाले कोई नहीं है क्योंकि कपड़ा दुकान का मालिक ही मुझे नज़र नहीं आ रहा--

क्रिश्चियन का मंदिर है यह पच्चीस दिसंबर को सजाया गया है चर्ज को और बहुत सुंदर दिख रहा है एक मुझे क्रूस क्रूस जैसे कुछ निशान दिख रहा है जिसको मैं देख कर यहाँ मज्ज य चर्ज है बोल रहा हूँ।

बेच रहे है और अपना-अपना हिसाब से और यहाँ कुछ फ़ोन पे के लिए बारकोड दिया गया है जिससे कोई ग्राहक आता है किसी के पास पइसा नहीं रहता तो इसके माध्यम से फ़ोन पे करके यहाँ से मछली लेकर जाता है।